छवि में एक छोटा कमरा दिखाई दे रहा है।

टेबल बहुत ही गंदे ढंग से रखा गया है।

कमरे के ऊपर वाले छत पर एक पंखा लगाया हुआ है।

मछली बाजार में बहुत सारी मछलियां कुछ बर्तनों में रखी गई दिखाई गई हैं।

इस छवि मे जो दृश्य है उसमें बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

छवि में एक घर नज़र आ रहा है।

छवि में एक बहुत बड़ा सुंदर घर नजर आ रहा है।

दरवाजों के पास एक आदमी चलता हुआ नज़र आ रहा है।

में बहुत सारे गाड़ियां पार्क किए हुए नजर आ रहे हैं।

फूल के बगल में कुछ घास दिखाई दे रही हैं।

सड़क में दो आदमी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

छवि में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है।

छवि में जो दृश्य है उधर एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

दुकान में बहुत सारे समान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस कमरे में बहोत सारी खिड़कियां और वेंटिलेटर नजर आ रहे हैं।

उनके छत को बहोत सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

बस स्टॉप में एक बस पार्क किया हुआ नजर आ रहा है।

बस के सामने जो स्टेशन है उधर कुछ चेयर रखे हुए नजर आ रहे हैं।